बाजार दिख रही है सब्जियां दिख रही है बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं आलू दिख रहे है दुकान दिख रही है ]

खंबे दिख रहे है पेड़-पौधे दिख रहे है एक हॉल द मकान दिख रहा है उसमें दुकान दिख रही सीढ़ियाँ दिख रही है काँच लगा हुआ दिख रहा है पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है क्रीम कलर पुतो --

एक स्कूल दिख रहा हैं उसमे येलो कलर पूता हुआ दिख रहा हैं ग्रीन कलर पूता हुआ दिख रहा हैं बोर्ड लगा हुआ दिख रहा हैं।